मूवीस के पोस्टर्स लगे हुए हैं यहां एक --

यहां अनंधरा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैजिसके कार्यकर्ता मिलकर--

देश के सम्मान के रूप मे --